पास ही में एक लोहे की इंगल से अलमारी जैसी बनी हुई है ।

ये एक रोड है जहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

और यात्रियों के पास ही एक काफी बड़ा बस स्टैन का बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में दो आदमी बी_एम_डब्ल्यू के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।